उसके पीछे एक कांच का रेड कलर का कपड़ा दिख रहा है एक फ्लावर पॉट दिख रहा है जो की व्हाइट कलर के फूल है उसमें।

कुछ पेड़े नजर आ रही है जो की व्हाइट कलर की है गुलाब जामुन की फोटो नजर आ रही है ब्लैक कलर की गुलाब जामुन--

इस इस इमेज में मुझे एक ऑफिस दिख रहा है ऑफिस में कुछ सोफे लगे हुए सोफे के कवर --

इस इमेज में मुझे एक टी.वी.एस गाड़ी दिख रही है जो की काले कलर और लाल कलर की है।